और यहां पे बहुत सारा पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

और नीचे के साइड पलंग के पास बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

अ दुकान का नाम है जसवाल और यहां पर तार दिख रहा है।

यहां पर एक बड़ा सा घर का दृश्य दिख रहा है।

और यहां पे टेबुल पे बहोत सारा प्राइज रखा हुआ है।

यहां पर एक बड़ा सा मंदिर है।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

यहां पर एक बड़ा सा माल दिख रहा है।

बड़ा सा काउंटर है और कलकुलेटर मशीन है।

और यहां पर गोंद भी दिख रहा है।

और बाइक भी दिख रहा है और इसके बगल में बहुत बड़ा सा घर है।

और नीचे के साइड पक्खल रखा हुआ है बहोत सारा जो की--

बहोत सारे लोग बच्चे और लड़का लाइन में खड़े हैं।

और बहुत सारे दुकान दिख रहे हैं।

और एक लेडिस व्हाइट कलर की साड़ी पहनी है।

और यहां पर ऊपर के साइड रेड कलर का डी ढक्कन लगाया हुआ है।

यहां पर एक बड़ा सा रोड का दृश्य दिख रहा है।

यहां पर एक छोटा सा घर है।

जोकि कटकर से छाया हुआ है।

और ऊपर पे इंटा रखा गया है।

क्योंकि यहां पर बहुत सारे सोफे लगे हुए हैं।

यहां पर एक बड़ा सा घर का दृश्य रहा है।

और एक कार बन रहा--

और इसका गेट भी खुला हुआ है।

जो कि यहां पर बहुत सारे लोग आदमीन हैं।

जो कि इन लोग से योगा कराया जा रहा है।

जो कि यहां पर मिक्सर मशीन दिख रहे हैं।

और यहां पे दरवाजा भी है और यहां पे पर्दा भी है।

जोकि नीचे के साइड टाइल्स मारा हुआ है।

उपर मेबड़ा सा काउंटर है।

यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

और यहां पे रोड के पास बहुत सारे गंदे भी हैं।

पर दूसरे काउंटर पर कंप्यूटर है।

बड़ा सा खिड़की भी दिख रहा--

यहां पर एक मुर्गा फार्म है जो कि यहां पे दो रेड कलर में डिब्बा में इसका चारा डाला हुआ है।

और घड़ी पहना हुआ है।

जो कि कुछ आदमी अंदर है कुछ आदमी बाहर है।

जो कि इसमें चिपकाया हुआ दरवाजा के पास और रेड कलर का पेंट भी मारा हुआ है।

और ब्लू कलर का कुछ दिख रहा है जो कि यहां पे बैंक का नाम है।

और यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।